सामने दो दो गेट लगे हुए है दोनों गेट खुले हुए हैं गेट के सामने गुलाबी कलर का पेंट हुआ है और फूल लगे हुए है।

एक रास्ता है जिसमे दो स्कूटी खड़ी है एक स्कूटी में दो लड़के बैठे हुए है रस्ते में अगल बगल फल की दुकान खुली हुई है जिनमे अनेक प्रकार के फल रखे हुए है।

और एक पोस्टर लाग्याका के सामने एक खम्बा हैं घर के सामने के सामने एक गेट हैं जो की अभी बंद हैं उसमे कथै कलर का कलर किया हुआ हैं।

एक नदी है जिसमे पानी बह रहा है उसके अगल बगल बोहोत सारे हरे भरे पेड़ पौधे है।

कुछ में बोहोत साड़ी खिड़किया दरवाजे है कुछ औरते और कुछ आदमी लोग है जो हाथो में सामान रख के इधर से उधर जा रहे है।

एक तालाब है जिसमे पानी भरा है बगल मैं एक मगर मच हैं जोके की काळा कलर का है वह मगरमछ बोहोत बड़ा है और चारो तरफ घास है जो की हरे भरे है।